कुर्सी टेबिल दिखाई दे रही है।

गैरेज की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे हॉल दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे सोने चांदी के आभू--